फोटो पर एक रोड के किनारे पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो पर एक बड़ा सा चर्च नजर आ रहा--

वह इस दुकान पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल भी नजर आ रहे हैं।

दुकान का नाम विगनन बुक सेंटर स्टेशनरी लिखा हुआ नजर आ रहा--

फोटो पर बड़ी सी दुकान नजर आ रही है।

कंप्यूटर लैब नज़र आ रहा है।

यह औरते एक साथ मिलकर छठ पूजा करती हुई नजर आ रही है।

की पटरियां नजर आ रही है।

जिसका नाम द ग्लोबल कॉलेज लिखा हुआ नजर आ रहा हैं।

इस एयरपोर्ट का नाम मुझे जबलपुर एयरपोर्ट नजर आ रहा है।